चेयर रखी हुई है और नीचे वो कार्पेट बिछा हुआ है और पैर पोछने के लिए और इसमे अ लाइट्स लगी हुई--

एक पेड़ पेड़ खड़ा है तो और पेड़ के टहनी पे एक बच्चा पकड़ के--

मशीनें अ लगी हैं और कुछ लोग को कॉस्ट्यूम पहने--

वे ड्रेस पहने हुए हैं इंडियन ऑयल की और पीछे गाड़ी खड़ी है फोर व्हीलर खड़ा है।

ब्लैक डेक्स है। डेक्स के ऊपर ब्लैक कलर की--

और ऊपर आसमान दिख रहा है।

बिल्डिंग में कुछ खिड़कियां है और बाहर--